ऊपर की तरफ लाइट भी लगी हुई है और सामने की तरफ जो दिवाल है उसपे व्हाइट कलर का पेंट हो रहा है यहा पर ब्लैक कलर का बेंचेज रखी हुई है।

यहाँ पर अ सब्जी वगेरा की शॉप है यहाँ जिसमे यहाँ पर लाल टमाटर दिख रहे है लाल भी है कुछ ग्रीन भी कच्चे टमाटर भी यहाँ पर दिख रहे है और यहाँ पर मिर्ची भी यहाँ पर दिख रही है।